इस मकबरे बनाने में बहुत मेहनत लगी है।

ये अपने बच्चों को पोलियो वगरह पिलाने के लिए आते हैं और सरकार द्वारा ली गई सुविधाओं को उठाते हैं ।

यह रोड बहुत ही अच्छे होते है जो यह बहुत दिनों तक चलते है और इसकी रिपेयरिंग पाँच -पाँच साल में होती हैं।

और यह पुल थोड़ा सा हिलने लगता है।

रिपेयरिंग कर रहे है गाड़ी में कुछ खराब हो गया है इसलिए इसको रिपेयर कर रहा है।